जिसमे बहोत से फल रखे है।

नीले रंग का बोर्ड --

यहाँ बहोत - सी मोटर साइकिल --

और यहाँ सफ़ेद रंग की बिल्डिंग --

और एक लाल रंग का बोर्ड --